आदमी बहोत सारे कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं।

फर्श में नीचे जो हैं वह कहीं घास हैं कहीं सूखे पत्थर और मिट्टियाँ हैं।

ऊपर छत का छत में बहोत सारे लाइट्स और ए.सी. लगी हुई हैं।

कुछ लोग के हांथ में मशाल है।

यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

गिट्टी और सीमेंट गिरे हुए है।

नीचे जो फर्श हैं वो नीले कलर का है।

फ्लैट के अंदर पीले लाल नीले कलर का पेंट किया हुआ है।

नीला आकाश दिख रहा है।

दुकान के बगल में एक और दुकान है और दुकान के दूसरे साइड शटर बना हुआ है।

कैरट रखे हैं प्लास्टिक के कहीं नीले हैं लाल हैं पीले हैं और हरे हैं।